नया नया रखा हुआ है बहुत ज्यादा--

ये है वेटर भी है एक थो टेबल भी है बहुत सारा।

और उसका ऊपर में पानी का बाटल है।

फोन के चार्जर और एलेक्सा वगैरा भी है।

और ये एक बच्चा कुछ माइक पकड के कुछ बोल रहा है।

पेड़ भी है पीछे में नारियल का थोड़ा थोड़ा और पेड़ भी है।

और पंखा भी है ए_सी भी है।

थर लोग भी है और जंगल बहुत ज्यादा है।

ये जो एक दुकान है।

दुकान का अंदर में एक बेंच रखा है और गेट भी अंदर में।

पलटा भी है।

ये जो एक घर है और ये घर का सामने लाइट का पोस भी है।

लाइट भी है सी_सी_टी_वी कैमरा भी है।

ये जो एक घर है।

बहुत ज्यादा है व पांच घर है हमें दिखाई दे रहा है।

और आदमी लोग चढ़ रहा है इसमें।

और लाइक का पोस्ट भी है।

और ये दुकान में भगवान का मूर्ति भी रखा हुआ है ऊपर में।